ये देखो किसी मीटिंग का फोटो लग रह है ।

के इ एन डी और ये क्या --

कुछ खरीदेंगे वेदांत बुक्स वर्ल्ड --

सारा कुछ अच्छा मेंटेन की है चलो अच्छी बात है करनी चाहिए सब --

पूरा का पानी पूरा का पूरा वायरेज से पानी निकल रहा है ।

कुछ ना कुछ कला दिखा रही है ।